एक लईका लड़की और उजला कलर का सामने दिखाई दे रहा है इस तस्वीर मे।

ये तस्वीर एक सैलून की है जहाँ कि तीन आदमी खड़े हैं और एक आदमी बैठ करके दाढ़ी बनवा रहा है।

और ये एक क्लासरूम की तस्वीर है।

और कुछ लाइटस जल रही है दिखाई दे रही है। इस स्टेज के --

आ कोई लाल और काले कलर की है तो कोई ब्लू और काले कलर की मोटरबाइक है।

और ये एक मोटर बाइक की दुकान की तस्वीर है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा फील्ड दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक हिरन दिखाई दे रही है जो कि ब्राउन कलर की हिरण है।

और दो आदमी दिखाई दे रहे है जो कि उजले करेक्ट के टी-शर्ट पहने हुए --

और एक चम्मच जो है वो सिंपल है और एक चम्मच जो है वो --

और कुछ औरते दिखाई दे रही हैं जोकि साड़ी पहनी हुई हैं और कुछ यहाँ --

और कुछ लाइट्स वगैरह जल रही है आसमान काला कलर का दिख रहा है।

और ए भरतनाट्यम कर रही है। यह --

ये अलमिरा घर में रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारे मोटरबाइक दिखाई दे रही है।

दो लेडिज हैं और एक लेडिज इसमें अ माइक में कुछ बोल रही है।

इस तस्वीर में एक मच्छी दिखाई दे रही है जोकि बहोत बड़ी मच्छी है। व्हाइट और ब्लैक कलर की मच्छी है ये।

एक तस्वीर में एक बड़ी सी फील्ड दिखाई दे रही है। फील्ड में बहोत सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

की दुकान है। किताब की दुकान है। एक आदमी दुकान के बाहर खड़ा है जो व्हाइट कलर का शर्ट और --